ये एक घर है। जिसमे कंस्ट्रकशन का काम चल रहा है। मजदूर जो है वो लगे हुएं है। ए-घ --

पाश्ता मसाला चिकन रखे हुए हैं। बिस्किट्स रखे हुए हैं।

ये एक वाटर पार्क है जिसमें एक ग्रीन कलर का कुछ बना हुआ है खेलने के लिए एक रेड कलर की चेयर रखी हुई है।

मंदिर का फर्श है जो रेड कलर का है और उसपे वाइट कलर की लाइनिंग है बहोत सारी लाइट भी लगी हुई हैं यहाँ पर।